लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कर्रहिया रखी दिखाई दे रही जिसमें कुछ बन रहा है। लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है। बाउंड्री के पीछे कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर एक बिल्डिंग दिखी जो दिखाई दे रहे --

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर एक अंकल अ-साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ठेले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाजू में पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा लम्बा सा अ दिखाई --

आदमी एक बहार आते हुए दिखाई दे रहा है एक पीछे दुकान दिखाई दे रही --

इसके पीछे एक चैर दिखाई दे रही है उसके पीछे एक टाउल नजर आ रहा है।

पर एक लड़का हाथ में मशीन रखे हुए दिखाई दे रहा है एक लड़का चेयर पे बैठे हुए फोन चलते हुए दिखाई दे रहा है उसके बाजू म में एक डोरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है उसके पीछे लगी हुई लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहा पर कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है यहा पर एक बत्ती उन कैंडल्सो में लगी हुई लगी हुई दीखाई दे रही है यहाँ पर चेयरों पे कैंडल्स लगी हुई दिखाई दे रही कुछ लोग जाते हुए भी दीखाई दे रहे है।

कुछ लोग निचे खड़े हुए हैं वहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक रूम के अंदर बलून्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग चेरयो में बैठे दिखाई दे रहे हैं आंटियां भी बैठी हुई दिखाई दे रही --

ये वह एक ग्रीन कलर की चटाई है रोड पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक पूजा चलती हुई दिखाई दे रही यहाँ पर --